भगवान जी की रैली फिर रही है कोरबा शहर में वहाँ देखने में कोरबा शहर में भगवान जी की रैली जैसे कोई भगवान जी का और बहोत आदमियों की बहुत सी भीड़ है।

इनको फिल्मों में बनाए जाते थे इसमें दो खंबे भी दिखाई दे रहे हैं एक मकान की बाउन्ड्री भी दिखाई दे रही है बाउन्ड्री के पीछे मकान --

मछलियों की दुकान है मछलियों की दुकान पे एक महिला अपने प-पर्स में से पैसे निकाल के उन मछलियों के दाम पूछ रही है और मछिलया वाले उसके रेट बता रहे है।

टेबलें भी ड ली हुईं हैं कुर्सियां डाली गयी हैं पंखे भी लगे हुए हैं दरवाजे खिड़कियां भीम राव आंबेडकर ने संविधान बनाया था--

काउंटर के सामने से टिकट लेंगे और ओं हाथ में हेलमेट लिए हैं और मेला थैला भी लिए हुए हैं कॉउंटरो से कुछ टिकट लेके अपनी रेल या बस की कुछ हैं यहाँ पर बनाए गए काउंटरे --